जस्ट पीछे सफेद रंग की कांच भी लगी हुई है। जिम सेंटर के बाहर --

यह एक मार्केट है और मार्केट के अंदर एक एटीएम में एटीएम का नाम स्टेट बैंक आफ इंडिया है और एटीएम से कुछ ही दूरी पे --

कई लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमे वह एक पाइप के द्वारा नीचे पानी में आ रहे हैं।

इसमें इस चित्र के नीचे है कुछ लिखा हुआ है जिसमें शिक्षा का धर्म सबसे न्यारा --

यह एक चित्र है और इस चित्र में एक मस्जिद दिखाई दे रहा है। मस्जिद को --

तलाब के जस्ट सुखे क्षेत्र पे कुछ महिलाययें पूजा करती हुई दिखाई दे रही हैं। जिसमें सभी महिलायें अपने हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।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

उस दुकान में डोमिनोज़ और भी कई चीजे लिखी हुई हैं।

जस्ट कुछ ही दूरी पर कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे। गार्डन के अंदर एक सफेद रंग की घर --

और पहाड़ का रंग काला दिखाई दे रहा है। पहाड़ से कुछ ही दूरी पे कुछ पत --

जिसमे एक कार की सर्विस सेंटर की जाडी है कार का रंग लाल दिखाई दे रहा है।

दो लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। पंडाल में पास एक दीवार है। दीवार पे डॉक्टर शिवराज सिंह इंटर कॉलेज --

लिखा हुआ है। पंडाल के अंदर एक बाइक भी खड़ी हुई है। बाइक के ऊपर एक चादर रखी हुई है सफे --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

पेड़ के पास एक लाइट पोस्ट भी है। जिसमें कई प्रकार के तार भी हैं।

और उसके कुछ ही दूरी पे एक बड़ा वृक्ष भी है। इसमें एक दुकान के अंदर एक लोग बैठे हुए --

लड़की ऊपर छोटे छोटे बैनर को लगाया गया है। जिसमे अलग-अलग प्रकार की फोटो भी है।

बोर्ड पे केटीएम लिखा हुआ है और उसमें दो केटीएम बाइक भी दिखाई दे रहा है। जिसके कुछ दूरी पे कई प्रकार की लाइट जल रही है।

इस मेले के अंदर बहोत सारे लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं जिसमें कुछ लोग झूले के ऊपर पर बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।